तरह तरह के मोबाइल रखे हुए हैं शोरूम अच्छा सजा हुआ--

ये भी रोड दिख रही है।

चारो तरफ पानी और जंगल दिख रहा--

और यह दृश्य बहोत सुंदर लग रहा है।

और एक काली तार दिख रही है।